वहीं दो मुर्गे भी हैं। मुर्गों का रंग लाल सफ़ेद और काला है।

बोट का रंग काला और सफ़ेद है। ऊपर आसमान भी है।

जिसके ऊपर पीले नीले और लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ है।

जिन्होंने नीले काले लाल पीले रंग के बस पहने हुए हैं।

इमारत की दीवालों का रंग सफ़ेद पीला और नीला है।

यहाँ एक बहुत बड़ी नदी बह रही है।

यहाँ एक सड़क है। सड़क के किनारे बड़ी-बड़ी सी इमारतें बनी हुई हैं।

पेड़-पौधों का रंग हरा है और यहीं बोहोत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।